कच्ची सड़क बनी हुई है जिसके किनारो पर हरे-भरे पौधे लगे हुए है।

चारो तरफ मैदान में कच्चे भूमि है और सफेद रंग से चारो तरफ गोला बनाया हुआ है।

मैदान में खड़ा है आसपास झंडे लगे हुए है जो की लाल और पीले है घर बने हुए है।

चारों तरफ दीवारे बनी हुई है जिनमें --

सफ़ेद लाल पिले हरे रंग के इस्तेमाल प्लास्टिक का लिफाफा भी रखा हुआ हैं जिसमें--

पानी का रंग नीला है का आस-पास हरियाली है।

और सफेद रंग के कुर्ते भी --

तीन मंजिला इमारत है जिस के बहार लोगो की भीड़ लगी हुई है इमारत में खम्बे है।

पिले और काले रंग की है आस-पास छोटे- छोटे बच्चे और लाल रंग की साड़ी पेहेने हुई महिला खड़ी है--

दुकाने है दुकानों में लाल रंग किया हुआ है।

एक बड़े से रूम में रेस्टोरंट में कॉफ़ी चाय टी सभी प्रकार की डिशेस मिलती है जिनमें --

सिर पर अपने धातु बाँधा हुआ है।

मंजिल बनी हुई है जिसमें घड़ी भी ल रखी हुई है टाइम बताने के लिए --

सड़क के किनारे दो मंजिला ईमारत बनी हुई है जिसमे दुकाने बनी हुई है ऊपर वाली छत पर--